यह एक केक की दुकान है उस केक की दुकान में बहुत सारे केक रखे हैं और वो केक की दुकान सजाया है फूगो से वहाँ पे कोका कोला का ऐसे बोर्ड लगा है ऊपर एक लाइट जल रहा है।

पुतले के हाथ में संगीत का विना है।

यह एक किल्ला है वो किल्ला वो किल्ला --

और वो एक नीले कलर का गेट है बहुत बड़ा उस गेट के ऊपर हरे कलर का पट्टियाँ लगी हुई हैं उसपे लिखा है गनतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

यहाँ पे एक नीम का पेड़ है बहुत बड़ा उस नीम के पेड़ के नीचे बहुत गर्दी है लेडी जेंट्स लोग खड़े हैं और वहाँ पे ऐसे --